एक ग़ाछ है जिसमें बहुत सारे हरे हरे पत्ते हैं।

काउंटर पे बहोत सारे सामान रखे हुए हैं.

सामने बहुत सारे ईंट बिछे हुए हैं।

जिसमे बहुत बड़ा बना हुआ हे.

यह एक होटल है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं.

ऊपर से पानी बेह रहे हे.

एक व्यक्ति खड़े हे तीन व्यक्ति काउंटर मे खड़े हे एक व्यक्ति काउंटर के अंदर खड़े हे.

यह एक डेम है जिसमें पानी बह रहे है.

पीछे खड़ा व्यक्ति जींस और शर्ट पहना हुआ है बेल्ट लगाए हुआ है.

उपर एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें फ्री ओपनिंग फेस्टिवल लिखा हुआ है.

एक व्यक्ति ग्राउंड के अंदर है।

जिसमे बहुत रंग के हे.

सामने काउंटर मे दो महिलाए खड़ी है एक पुरुष फ़ोन चला रहा है. साम--

दीवाल का रंग व्हाइट है.

यह एक कपड़े की शॉप है जिसमे बहुत सारे पजेमे लगे हुए हैं बहुत सारी टीशर्ट हैं बहुत सारी लड़की के कपड़े हैं.

उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे है जिसमें हरे हरे पत्ते है.

सामने कुछ कार्टून का बना हुआ है।

पिछे एक घर बना हुआ है.

यह पांडे दूकान है जिसमें के पीछे एक पेड़ का पेड़ है जिसमे हरी पत्ती है.

ऊपर भी बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे हैं.

यह एक क्लीनिक है जिसमें बहुत सारे दवाई रखे हुए हैं।

सामने एक पंप हाउस है.

और कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है।

यह एक दुकान लग रहा है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक साड़ी का दुकान है जिसमें बहुत सारे साड़ी रखें हुए हैं।

महिलाएं साड़ी खरीद रहे हैं.

इस काउंटर में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं.

नदी हे जिसमे बोहोत पानी है पानी भरा हुआ हे.

यह एक गेम है जिसमें गिलास को खड़ा किया जाता है.